एहर एकेल नाव हे के लिठा दें सूरज है नाव है अतेक आदमी बैठिन है नाव कर उपरे हे छतरी घलो लगाल है।